यहाँ एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग हैं और बाहर काफी सारे लोग इक्कठा हैं | यहाँ पे बहुत सारे पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पुलिस वाले भी है और यह बिल्डिंग व्हाइट कलर की है।

यहाँ एक स्कूल का फोटो है | यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ अपनी एक्टिविटी कर रही हैं | ड्रॉइंग कर रही हैं | क्राफ्ट का काम कर रही हैं।